इसका किनारे-किनारे ह घर मकान ह बिजली खम्भा --

खेल का मैदान है बगल में स्कूल है बच्चे लोग मैदान में खेल रहे है सामने साइकिल खड़ा हैं।

बहुत सारे सोफा लगे हैं।

-- का प्रोग्राम जो होता है उस तरीका से सजाया गया है साथ ही लाइट लगाया गया है कुर्सी रखा हुआ हैं।

इ बोरी में लसुन प्याज आलू दिख रहा है इधर आदमी का बहुत भीड़ लगा हैं।